और इ में आज भी नइखे लउकत | खली पाइप के बॉस के लागल बाटे सेंटरिंग एकरा कहल जा ला | इ सेंटरिंग होएता अभी |

एमे ढेगी बटेगो ओर डेगी पे दूगो आदमी बैठल बाटे।